जो कि दो व्यक्ति उसमें वोटिंग करते दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे किसी प्रकार का मेला लगते हुए नज़र आ रही है जो कि बहोत सारी समाने भी है ।

पेड़ एकदम सूखे नज़र आ रहे है जमींन सब मट मैला दिखाई दे रहा है बादल भी रंगहिन दिखाई देते हुए नज़र आ रहे है।

और फूल खिले हुए नज़र आ रहे है और सफ़ेद है उसके किनारे मे कुछ फूल है और वो पीले रंग में दिख रहे है।